यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का मंदिर है और बहुत अच्छा पुरानी मंदिर लग रही है यहाँ पे एक पेड़ भी है और काफी पुराने मकान लग रहे हैं यहाँ पे बगल-अगल में।